और यहां में एक बहुत बड़ा पेड़ है जिसने छाया दिया है इंसानों को।

और ये एक घर के पीछे में है और इसका पीछे में भी बहुत सारा पेड़ है।

इसमें हर एक इलेक्ट्रॉनिक की चीज मिल रही हो।

हमें एक घर दिखाई दे रहें हैं जिसके ऊपर भी बहुत सारा लोग बैठे हैं छत में और बरांदा में भी बहुत सारे लोग बैठे हैं।

यहाँ हमें एक पेट्रोल पंप दिखाई दे रहे यहां में एक डोजर मे तेल डाल रहे हैं।

बहुत सारे टेबल और इंटरेस्टिंग आईना बहुत सारे कुछ है यहां पे लग रहे हैं कि यह बहुत बड़ा एक दुकान है।

और देख कर लग रहे है कि ये एक फूल गुस् गुलदस्तों का दुकान है।

और यहां पर एक बैग भी रखे गए हैं।

और ये लग रहा है कि ऊपर नीचे दोनों ही में बहुत सारा दुकान है।

और आगे में एक कुछ दुकान दिखाई दे रहे है जहां में लिखा है हेलम बोल के हिंदी से इंग्लिश से और लगता है कुछ और भाषा से लिखा है।

और यहां पे दुकान के सामने में भी फिर एक दुकान ही लग रहे हैं।

अ यहां में बहुत सारा स्टेच्यूस दिखाई दे रहे हैं इंसानों के पुतले दिखाई दे रहे हैं।

यहां में बहुत सारा मर्द है और एक औरत है।

ये लग रही है कि एक जंगल में बकरियों को खाना खिला रहे हैं।

हमें एक अअ रास्ता पर बहुत सारे लोग अं ब्लू कलर पहन के और अं ड्रम को लेकर जा रहे हैं ढोल बजाते हुए।

और साथ में ही एक आ बच्चा भी खड़ा है।

सामने में एक स्कॉर्पियो भी दिखाई दे रहे है और आगे में भी एक घर दिखाई दे रहे है।

गेट भी है यहां पे गेट के बाहर में बहुत सारा स्कूटी और बाइक नजर आ रहे हैं।

और ये बहुत बड़ा सा रूम है और बहुत ही सुंदर इंटीरियर के साथ में जहां में बहुत सारे सोफा रखे हुए है।

देख के लग रहे हैं कि एक शायद से बहुत बड़ा होटल है।

यहां में एक बहोत बड़ा दुकान है लग रहे हैं जहां पे दरवाजा बिक्री कर रहे हैं फर्नीचर ।

यहां पे एक बहोत बड़ा सा दुकान दिखाई दे रहे हैं।

यहां में केक सब कुछ मिल रहे हो और बहुत सा सारे बलूंस ब्लू व्हाइट और ऑरेंज ग्रीन बैलून से सजाए हुए हैं।